इसके अंदर में कई सारे गाय रखा हुआ है।

कमरे की कई सारे शीशे भी दिख रहा है।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

सामने में एक बाइक भी रखा हुआ है।

उसमें कई सारे रंग बिरंगी फूल है।

सामने में कई सारे बाटल भी रखा हुआ हैं।

और कई सारे गाड़िया भी रखा हुआ हैं।

सामने में एक गेट भी है।

सामने में एक जनरेटर घर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कई सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

सामने में कई सारे कुर्सीयां भी रखा हुआ है।

ऊपर में लाइट बल्ब और पंखे भी लगाया हुआ है।

इसमें कई सारे कुर्सियां रखा हुआ है।

कई सारे पेड़ पौधें भी हैं सामने में बड़ा सा मैदान है।

कई मे भी लगाया हुआ है।

और कई सारे स्कूल बैग भी टंगाया हुआ है।

और एक आदमी भी है सामने में दो खिड़कियां भी ह--

आस पास कई सारे लोग भी हैं।

कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

कुर्सियां के ऊपर कई सारे पिलो भी रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर का हिस्सा है टिशू पेपर रखा हुआ है।

जैसे कि घड़े मूर्ति खंजर।

और बाल्टी भी टंगाया हुआ--

सामने में कई सारा कार्टून के बॉक्स भी रखा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

जो की येलो ब्लैक रेड कलर है।

नदी के ऊपर एक बड़ा सा शिप भी है।

उसके ऊपर कई सारे किताबें रखा हुआ है।